बहुत से पेड़ दिखाई दे रहे हैसामने मे हमे नीले कलर का आसमान दिखाई दे रहा है।

ऊपर नीले कलर का आसमान दिखाई दे रहा है यह देखने मे बहुत अच्छा लग रहा है जमीन मे चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है।

चमन में ऊपर नीले कलर का बादल दिखाई दे रहा चमन में नीचे हमें हरियाली दिखाई दे रही है। इस में बहुत सारे पेड़े दिखाई दे रहे है।

इस इमेज मे हमे सामने दो तीन घर दिखाई दे रहे है जो रेड कलर से पेंट किये गए है। इस ईमेज मे हमें एक पेड़ सामने दिखाई दे रहा है।

उप्पर इस इमेज मे गमले भी रखे हुए है यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए है यहाँ पर हमे हेड भी दिखाई दे रही है जो पीले कलर के बोर्ड मे उल्ट्रटेक सीमेंट की यहाँ पे तार दिखाई दे रहे है यहाँ पर उप्पर---